ये द्रश्य एक कंस्ट्रक्शन साइट का है जहाँ पर हमे कुछ व्यक्ति काम करते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर कलर बनाने की भी तैयारी भी की जा रही है।

ये दृश्य एक फैक्ट्री का दृश्य है यहाँ पर हमे बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है साथ ही हम यहाँ पे तरह तरह की मशीने भी रखी हुई देख--

अभी हम मछली की दुकान देख पा रहे है। यहाँ पर अलग-अलग तरह की मछलियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है। जिनमे हम झींगे भी देख पा रहे है। बहुत सारे लोग हमें यहाँ मछलिया खरीदने के लिए खड़े दिखाई दे रहे है।

इनमें से हम कई मछलियों के सर अलग निकले हुए देख पा रहे है हमें यहाँ पर एक बकरा और एक बाल्टी रखा हुआ भी दिख रहा हैं देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।